ये एक होटल का कमरा है। सामनें बोतल है जग है अलमारी है ब्रॉउन कलर की पत्थर लगा हुआ है।

काफी सुन्दर पेड़ है। हर तरफ हरियाली हरियाली हैं।

ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे काफ़ी सारी घांस है।

ये काफ़ी सुन्दर स्कूल है। यहाँ भारत माता की तस्वीर है। यहाँ क्लासरूम है।

केक काफी सुन्दर लग रहा हैं।